और क्या है ग्रीन --

बहुत सारा लाइट वेगेरा भी लगे हुए हैं बहुत सारा जिम में बहुत सारे सामान भी रखा हुआ है और --